यहां पे बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और यह बच्चे सभी एक ड्रेस में बैठे हुए हैं।

बाहर में गेट लगाया गया है गेट का रंग पीला है और बाहर में अल्बेस्टेर रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

नीचे बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे--

यहां के बादल सफेद नजर आ रहे हैं।

सारे आदबीन भी दिखाई दे रहे है।

एक के दीवार पे भगवान ने फोटो लगाया गया है।

यहां पे टाइल्स भी लगाया गया है और यहां पे रूम में लाइट भी लगाया गया है।

यह एक रूम है रूम का दीवार सफेद है।

टेबुल के ऊपर एक कुलर भी रखा गया है और इस रूम में टाइल्स भी लगाया गया है।

दीवार पे चित्र भी बनाया गया है और यहां पे बोर्ड भी लगाया गया--

यह एक नाव है नाव भूरा और सफेद रंग का है।

यहा पे पानी दिखाई दे रहे है।